और एक हल्का सा पहाड हम देख रहे हैं | ये मैदान देख के और यहाँ के लोगो को देख के यह कहा जा सकता है कि यहाँ प्रतियोगिता हो रही है।

अभी ये गेट खुला है इसका मतलब यहाँ अभी अंदर परेड चल रही है।

यह शोरूम काफी बड़ा है और काफी सुंदर है। कांच का शोरूम है यह और टाटा मोटर्स की गाड़ी।

लड़के काफी न तादाद में बड़े नंबर पे यहाँं मौजूद है वो खेल रहे हैं फुटबॉल का गेम ।

इस रोड पे हीरो का शोरूम के सामने एक नारियल का पेड़ है जो अच्छा लग रहा है दिखने में और सुंदर--